और यहां पर मेज पर यह डब्बे रखे हुए हैं इनके अंदर बहोत अच्छा अच्छा खाना है।

यहां पर गई हैं रंग बिरंगी गुब्बारों सजावट की गई है।

ये एक घर है और घर के अंदर एक आदमी बैठा है।

और एक मेज भी रखी हुई है यहां पर--

वहां फूलों के बगीचे में पांच आदमी खड़े हैं।

और इस डाक खन्ने के अंदर बहोत सारी मोटरसाइकिल खड़ी है।

यहां पर भी देख सकते हैं यहां पे एक खाने पीने की दुकान है।

और इस घर के बाहर दो पोस्टर लगे हुए --

ये देखिए यहां पर गुब्बारों से सजावट की गई है।

और ये गुब्बारों से सजावट की गई है।

और इधर साइड में दो खिड़कियां लगा रखी हैं।

ये देखिए भवन बनने जा रहा है।

और यहां पर मेले की दुकान लगी हुई है।

और इसके अंदर बहुत सुंदर लाइट लगी हुई है।

ये एक बड़ा सा मैदान है जिसमें हरी हरी घास खड़ी है।

और कार में दो आदमी तेल डलवा रहे हैं।

और काउंटर के अंदर दवाई रख रखी है।

यह एक शादी का पंडाल है।

इधर साइड में एक ख़म्भे खड़े हैं और एक पेड़ भी है।

यह एक कपड़ों का शोरूम है।

इस शोरूम में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं।

ये किसी की तरफ उंगली कर रहे हैं।